पेड़ पौधे हैं बाल्टी हैं महिलाएँ व पुरुष हैं ।

फल है पेपर के टुकड़े है काले अंगूर है अनानास है।